में एक वाला डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक गार्डन जैसा भी दिखाई दे रहा है।

खाने पीने का चीज रखा हुआ है।

और पीछे में भी बहोत सारा तस्वीर और छोटा मोटा घर--

यहां हमें एक चप्पल भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका अंदर में बहुत सारा इंसान लोग बैठा हुआ है।

और उधर में एक लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक जनरल ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा पहाड़ लोग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा बच्चा लोग खेलते हुए नजर आ रहा है।

राइट में एक क्लॉक भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा स्क्रैच लुक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा फिल्टर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बॉक्स दिखाई दे रहा है।

यहां से दो ठो ट्रेन भी दिखाई दे रहा है।

और इसका अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में बहुत सारा फैन लोग भी दिखाई दे रहा है।

इसका आगे में एक टू नेटवर्क का टॉवर भी दिखाई दे रहा--

पीछे बहुत सारा गर्ल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हार्डवेयर का दुकान दिखाई दे रहा है।

सोफा सेट का ऊपर में एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।